हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट की है।

यहाँ पर सर पे ऊपर तिरपाल बीछा के लोगो ने ठेले पर मंडी सब्जी लगाई है। यहाँ पर कुछ केरिया टमाटर और अन्य सब्जी बेचते लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे ऊपर की बुक्स उतारने के लिए दो तीन सीढ़िया भी दिखाई दे रही है।